इस तस्वीर में दिखाया गया दृश्य जो कि किसी मेल अ ब्यूटीशियन अथवा सैलून का हैं।

इस तस्वीर में दिखाया गया दृश्य जो कि किसी अ आइसक्रीम कुल्फी शॉप का लग रहा है।

तथा गमले भी रखें हुए हैं तथा बहोत से कपड़े छोटे बड़े बच्चे बूढ़े हर किसी के लिए कपड़े रखे हुए हैं।

मंदिर यहां दार्शनिक स्थान का है जिसमें बहोत सारे भक्त दर्शन के लिए जा रहे हैं।

अ जिसमें कि अ रेड पिंक पर्पल येलो ब्लू एंड मेनी टाइप्स के बलूंस लगे हुए हैं त जो कि वॉल पे लगे हुए हैं। त --

मूर्तियां बनी हुई है छोटी छोटी सी साइड में।

इस तस्वीर में दिखाया गया दृश्य जो कि खेल की वस्तुएं रखी हुई है।

हाथ में किसने फूल लिया हुआ है जोकि पिंक कलर का है।

बहोत से अ कैरेट है जिनमें सामान रखा है।